लोग भी सुबह टहलने आते हैं काफी भीड़ लगी रहती है इस मैदान में।

खे खिलाड़ियों के जर्सी मिलते हैं ।

बहुत सारे लोग यहां से इन चीजों को खरीदते हैं।